यहाँ पर बैंचो पर बच्चे बैठे है और बच्चों के पेरेंट्स बैठे हैं।

जिस पर लिखा हुआ है हमर कैफे --

और एक कटोरी में चटनी रखी हुई है हरी--

जब सूरज हो रहा है और कुछ किरणे सूरज की बादलों में छाई हुई है।

ये करीब यहाँ पर बच्चे बैठते हैं।

यह एक फिल्म थ्रेटर का दृश्य है जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में --

टेप वेप रखी होगी बुक पैक करने के लिए --

आज यहाँ पर कोई फंक्शन है इसलिए इस पर लड़ी लगाई गई है।

इस के सिर पर शायद लग रही है जहाँ पर बाल नहीं है।

यहाँ एक सर्कस का दृश्य हैं जहां पर एक घोड़े वाला जोला हैं।

बीच में एक खंभा है जिस पर से तार जा रहै हैं।

इस पानी में नए बड़े ये है करंट भी मार सकता हैं।